एंड कैफे के सामने कई पर्सन नजर आ रहे हैं जोकि--

एंड दो तीन परसेंट पीछे दिखाई दे रहे हैं एंड कई तरह के फ्रूट्स आपके यहां पे दिखाई दे रहे हैं।

आ रहे हैं ऐ इस पिक्चर में सामने एक पेड़ दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में हमें एक हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है ऐंड हॉस्पिटल के जो काउंटर है उसपे कई फाइल्स --

और इस पिक्चर में बाउंड्री घेरी हुई है जो कि दीवाल से है अ दीवाल जो है बी येलो एंड रेड कलर की है और पीछे बहुत--